मेरे प्यारे देशवासियोनमस्कार
हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताक़त के साथ COVID19 के खिलाफ़ लड़ रहा है
पिछले सौ वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी पैंडेमिक के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है
इस दौरान साइक्लोन अम्फान आया साइक्लोन निसर्ग आया अनके राज्यों में बाढ़ आई छोटेबड़े अनेक भूकंप आए भूस्खलन हुए
अभीअभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर दो बड़े साइक्लोन्स का सामना किया
पश्चिमी तट पर साइक्लोन ताऊते और पूर्वी कोस्ट पर साइक्लोन यास
इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है
देश और देश की जनता इनसे पूरी ताक़त से लड़ी और कम से कम जनहानि सुनिश्चित की
हम अब ये अनुभव करते हैं कि पहले के वर्षों की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा पा रहे हैं
विपदा के इस कठिन और असाधारण परिस्थिति में साइक्लोन से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया हैइस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ अनुशासन के साथ मुक़ाबला किया है मैं आदरपूर्वक हृदयपूर्वक सभी नागरिकों की सराहना करना चाहता हूँ
जिन लोगों ने आगे बढ़कर राहत और बचाव के कार्य में हिस्सा लिया ऐसे सभी लोगों की जितनी सराहना करें उतनी कम है
मैं उन सब को सैल्यूट करता हूँ
केंद्र राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन सभी एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करने में जुटे हुए हैं
मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है
हम सभी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ मज़बूती से खड़े हैं जिन्होंने इस आपदा का नुक़सान झेला है
मेरे प्यारे देशवासियो चुनौती कितनी ही बड़ी हो भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है
देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवाभाव ने देश को हर तूफ़ान से बाहर निकाला है
हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स नर्सेस और फ्रंट लाइन वॉरियर्स उन्होंनेख़ुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं
इस सबके बीच कई लोग ऐसे भी हैंजिनकी कोरोना की सेकंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है
मुझसे मन की बात के कई श्रोताओं ने NamoApp पर और पत्र के द्वारा इन वॉरियर्स के बारे में चर्चा करने का आग्रह किया है
साथियो जब सेकंड वेव आई अचानक से आक्सीजेन की माँग कई गुना बढ़ गई तो बहुत बड़ा चैलेंज था
मेडिकल आक्सीजेन का देश के दूरसुदूर हिस्सों तक पहुँचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी
आक्सीजेन टैंकर ज़्यादा तेज़ चले
छोटीसी भी भूल हो तो उसमें बहुत बड़े विस्फोट का ख़तरा होता है
इंडस्ट्रियल आक्सीजेन का उत्पादन करने वाले काफी प्लांट देश के पूर्वी हिस्सों में हैं वहाँ से दूसरे राज्यों में आक्सीजेन पहुँचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता है
देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद की क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने आक्सीजेन एक्सप्रेस ने एयर फोर्स के pilotsने
ऐसे अनेकों लोगों ने युद्धस्तर पर काम करके हज़ारोंलाखों लोगों का जीवन बचाया
आज मन की बात में हमारे साथ ऐसे ही एक साथी जुड़ रहे हैं uप
के जौनपुर के रहने वाले श्रीमान् दिनेश उपाध्याय जी
दिनेश जी नमस्कार
सर जी प्रणाम
सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा अपने बारे में हमें ज़रुर बताइए
सर हमारा नाम दिनेश बाबूलनाथ उपाध्याय है
मैं गाँव हसनपुर पोस्ट जमुआ ज़िला जौनपुर का निवासी हूँ सर
उत्तर प्रदेश से हैं
हाँ हाँ सर
और सर हमारा एक लड़का हैं दो लड़की और औरत और माँबाप
और आप क्या करते हैं
सर मैं आक्सीजेन का टैंकर चलाता हूँ सर लिक्विड आक्सीजेन का
बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है
हाँ सर बच्चों की पढ़ाई हो रही है
लड़कियाँ भी पढ़ रहीं हैं दोनों और मेरा लड़का भी पढ़ रहा है सर
ये ओनलाइन पढ़ाई भी ठीक से चलती हैं उनकी
हाँ सर अच्छे ढ़ंग से कर रहे हैं अभी बच्चियाँ हमारी पढ़ रहीं हैं
ओनलाइन में ही पढ़ रहीं हैं सर
सर 15 से 17 साल हो गया सर मैं आक्सीजेन का टैंकरचलाता हूँ सर
अच्छा आप ये 1517 साल से सिर्फ़ आक्सीजेन लेके जाते हैं तो सिर्फ़ ट्रक ड्राइवर नहीं हैं आप एक प्रकार से लाखों का जीवन बचाने में लगे हैं
सर हमारा काम ही ऐसा है सरआक्सीजेन टैंकर का कि हमारी जो कंपनी है इनॉक्स कंपनी वो भी हमारा लोग का बहुत ख्याल करती है
और हम लोग कहीं भी जा के आक्सीजेन खाली करते हैं तो हमें बहुत ख़ुशी मिलती है सर
लेकिन अभी कोरोना के समय में आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई है
हाँ सर बहुत बढ़ गई है
जब आप अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है पहले की तुलना में क्या अलग अनुभव काफ़ी दबाव भी रहता होगा मानसिक तनाव रहता होगा परिवार की चिंता कोरोना का माहौल लोगों की तरफ से दबाव माँगे
क्या कुछ होता होगा
सर हमें कोई चिंता नहीं होता
हमें खाली ये ही होता है कि हमें अपना जो कर्तव्य कर रहा हूँ सर जी वो हम टाइम पे लेके अगर हमारे ऑक्सीजन से किसी को अगर जीवन मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है
बहुत उत्तम तरीक़े से आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो
अच्छा ये बताइए आज जब इस महामारी के समय लोग आपके काम के महत्व को देख रहे हैं जो शायद पहले इतना नहीं समझा होगा अब समझ रहे हैं तो क्या आपके और आपके काम के प्रति उनके नजरिए में परिवर्तन आया है
हाँ सर जी अभी पहले हम आक्सीजेन के ड्राइवर कहीं भी जाम में इधरउधर फसें रहते थे लेकिन आज के डेट में प्रशासन ने भी हमारा लोग का बहुत हेल्प किया
और जहाँ भी हम जाते हैं हम भी हमारे अन्दर से जिज्ञासा आती है हम कितने जल्दी पहुँच के लोगों की जान बचाएं सर
चाहे खाना मिलेचाहे न मिले कुछ भी दिक्कत हो लेकिन हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं जब टैंकर लेके और देखते हैं कि हॉस्पिटल वाले हम लोगों को Vका इशारा करते हैं उनके फैमिली लोग जिसके घरवाले एडमिट होते हैं
अच्छा विक्ट्री का Vबताते हैं
हाँ सर व बताते हैं कोई अंगूठा दिखाता है
हमको बहुत तसल्ली आती है हमारे जीवन में कि हमने कोई अच्छा काम ज़रुर किया है जो मुझे ऐसा सेवा करने का अवसर मिला है
सारी थकान उतर जाती होगी
हाँ सर हाँ सर
तो घर आ करके बच्चों से बातें बताते हो आप सब
बच्चे तो हमारे गाँव में रहते हैं
हम तो यहाँ इनॉक्स एयर प्रोडक्ट में मैं ड्राईवरी वर्किंग एएस आ ड्राइवर करता हूँ
89 महीने के बाद तब घर जाता हूँ
तो कभी फ़ोन पर बच्चों से बात करते होंगे तो
हाँ सर बराबर होता है
तो उनके मन में रहता होगा पिताजी जरा संभालिये ऐसे समय
सर जी वो लोग बोलते हैं पापा काम करो लेकिन अपनी सेफटी से करो और हम लोग सरसेफटी से काम करते हैं
हमारा मानगाँव प्लान्ट भी है
इनॉक्स बहुत हमारा लोगों का हेल्प करता है
चलिए दिनेश जी मुझे बहुत अच्छा लगा
आपकी बातें सुनकर के और देश को भी लगेगा कि इस कोरोना की लड़ाई में कैसे कैसे किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं
आप 99 महीने तक अपने बच्चों को नहीं मिल रहे हैं
परिवार को नहीं मिल रहे हैं सिर्फ़ लोगों की जान बच जाए
जब ये देश सुनेगा न देश को गर्व होगा कि लड़ाई हम जीतेंगे क्योंकि दिनेश उपाध्याय जैसे लाखोंलाखों ऐसे लोग हैं जो जीजान से जुटे हुए हैं
सर जी हम लोग कोरोना को किसीनकिसी दिन जरुर हराएंगे सर जी
चलिए दिनेश जी आपकी भावना ये ही तो देश की ताक़त है
बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी
और आपके बच्चों को मेरा आशीर्वाद कहियेगा
ठीक है सर प्रणाम
प्रणाम प्रणाम
साथियो जैसा कि दिनेश जी बता रहे थे वाकई जब एक टैंकर ड्राइवर आक्सीजेन लेकर अस्पताल पहुँचते हैं तो ईश्वर के भेजे गए दूत ही लगते हैं
हम समझ सकते हैं कि ये काम कितनी ज़िम्मेदारी का होता है और इसमें कितना मानसिक दबाव भी होता है
साथियो चुनौती के इसी समय में आक्सीजेन के ट्रांसपोर्टेशन को आसान करने के लिए भारतीय रेल भी आगे आई है
आक्सीजेन एक्सप्रेस आक्सीजेन रेल ने सड़क पर चलने वाले आक्सीजेन टैंकर से कहीं ज्यादा तेज़ी से कहीं ज्यादा मात्रा में आक्सीजेन देश के कोनेकोने में पहुंचाई है
माताओंबहनों को ये सुनकर गर्व होगा कि एक आक्सीजेन एक्सप्रेस तो पूरी तरह महिलाएँ ही चला रही हैं
देश की हर नारी को इस बात का गर्व होगा
इतना ही नहीं हर हिन्दुस्तानी को गर्व होगा
मैंने आक्सीजेन एक्सप्रेस की एक लोकोपाइलट शिरिषा गजनी जी को मन की बात में आमंत्रित किया है
शिरिषा जी नमस्ते
नमस्ते सर कैसे है सर
मैं बहुत ठीक हूँ
शिरिषा जी मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पाइलट के रूप में काम कर रही हो और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली ये आक्सीजेन एक्सप्रेस को चला रही है
शिरिषा जी आप बहुत ही शानदार काम कर रही हो
कोरोना काल में आप की तरह अनेक महिलाओं ने आगे आकर कोरोना से लड़ने में देश को ताक़त दी है
आप भी नारीशक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं
लेकिन देश जानना चाहेगा मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है
सर मुझको मोटिवेशन मेरा फादरमदर में है सर
मेरा फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सर
एक्चुअली आई एएम हेविंग त्वो एल्डर सिस्टर सिर
वे एआरई थ्री मेंबर्स लेडीज ओनली बट माय फादर गिविंग वेरी एन्कोरेज टो वर्क
माय फर्स्ट सिस्टर डोइंग गवर्नमेंट जॉब इन बैंक एंड आई एएम सेटल्ड इन रेलवे माय पेरेंट्स ओनली एन्कोरेज मे
अच्छा शिरिषा जी आपने सामान्य दिनों में भी रेलवे को अपनी सेवाएँ दी हैं
ट्रेन को स्वाभाविक चलाया है लेकिन जब ये एक तरफ़ आक्सीजेन की इतनी माँग और जब आप आक्सीजेन को ले के जा रही हैं तो थोड़ा ज़िम्मेदारी भरा काम होगा थोड़ी और ज़िम्मेवारियाँ होंगी सामान्य गुड्स को ले जानाअलग बात है आक्सीजेन तो बहुत ही डेलिकेट भी होती है ये चीज़ें तो क्या अनुभव आता था
मैं हैप्पिली फील किया ये काम करने के लिए
आक्सीजेन स्पेशियल देने के टाइम में सभी देख किया सेफटी का वाइज फॉर्मेशन वाइज एनी लीकेज है
नेक्स्ट इंडियन रेलवे भी सपोर्टिव है सर
ये आक्सीजेन चलाने के लिए मुझको ग्रीन पथ दिया ये गाड़ी चलाने के लिए 125 किलोमीटर ओने एंड आ हाल्फ हौर में रीच हो गया
इतना रेलवे भी रिस्पांसिबिलिटी ले लिया मैं भी रिस्पांसिबिलिटी लिया सर
वाह चलिए शिरिषा जी मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और आपके पिताजी माताजी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ जिन्होंने तीनों बेटियों को इतनी प्रेरणा दी और उनको इतना आगे बढ़ाया और इस प्रकार का हौसला दिया है
और मैं समझता हूँ ऐसे माँबाप को भी प्रणाम और आप सभी बहनों को भी प्रणाम जिन्होंने इस प्रकार से देश की सेवा भी की और जज़्बा भी दिखाया है
बहुतबहुत धन्यवाद शिरिषा जी
धन्यवाद सर
थांक यू सिर
आपका ब्लेसिंग्स चाहिए सर मुझे
बस परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे आपके मातापिता का आशीर्वाद बना रहे
धन्यवाद जी
धन्यवाद सर
साथियो हमने अभी शिरीषा जी की बात सुनी
उनके अनुभव प्रेरणा भी देते है भावुक भी करते है
वास्तव में ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि इसमें रेलवे की ही तरह हमारा देश जल थल नभ तीनों मार्गों से काम कर रहा है
एक ओर खाली टैंकर्स को एयर फोर्स के विमानों द्वारा आक्सीजेन प्लांट्स तक पहुँचाने का काम हो रहा है दूसरी ओर नए आक्सीजेन प्लांट्स बनाने का काम भी पूरा किया जा रहा है
साथ ही विदेशों से आक्सीजेन आक्सीजेन कंसंट्रेटर्स और क्रायोजेनिक टैंकर्स भी देश में लाये जा रहे हैं
इसलिए इसमें नेवी भी लगीएयर फोर्स भी लगी आर्मी भी लगी और DRDOजैसी हमारी संस्थाएं भी जुटी हैं
हमारे कितने ही वैज्ञानिकIndustryके expertsऔर टेक्नीशियन्स भी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं
इन सबके काम को जानने की समझने की जिज्ञासा सभी देशवासियों के मन में है
इसलिए हमारे साथ हमारी एयर फोर्स के ग्रुप कैप्टन पटनायक जी जुड़ रहे हैं
पटनायक जी जय हिन्द आई
सर जय हिन्द Iसर मैं ग्रुप कैप्टन एके पटनायक हूँ
वायुसेना स्टेशन हिंडन से बात कर रहा हूँ
पटनायक जी कोरोना से लड़ाई के दौरान आप बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी संभाल रहे हैं आई दुनिया भर में जाकर के टैंकर लाना टैंकर यहाँ पहुँचाना आई मैं जानना चाहूँगा कि एक फौजी के नाते एक अलग प्रकार का काम आपने किया है आई मरनेमारने के लिए दौड़ना होता है आज आप ज़िन्दगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं आई कैसा अनुभव हो रहा है
सरइस संकट के समय में हमारे देशवासियों को मदद कर सकते हैं यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का काम है सर और यह जो भी हमें मिशन्स मिले हैं हम बख़ूबी से उसको निभा रहे हैं आई हमारी ट्रेनिंग और सपोर्ट सर्विसेज जो हैं हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है सर इसमें जो हमें जॉब सैटिस्फैक्शन मिल रही है वो बहुत ही हिघ लेवेल पे है और इसी कि वजह से हम कंटीन्यूअस operationsकर पा रहे हैं आई
कैप्टेनआप इन दिनों जोजो प्रयास किए हैं और वो भी कम से कम समय में सब कुछ करना पड़ा है आई उसमें अब इन दिनों क्या रहा आपका
सर पिछले एक महीने से हम कंटीन्यूअसली आक्सीजेन टैंकर्स और लिक्विड आक्सीजेन कंटेनर्स डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन दोनों से उठा रहे हैं सर आई क़रीब 1600 सॉर्टीज से ज्यादा एयर फोर्स कर चुकी है और 3000 से ज्यादा घंटे हम उड़ चुके हैं आई क़रीब 160 इंटरनेशनल मिशन्स कर चुके हैं
जिस वजह से हम हर जगह से आक्सीजेन tankersजो पहले अगर डोमेस्टिक में 2 से 3 दिन लगते थे हम उसको 2 से 3 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं सर और इंटरनेशनल मिशन्स में भी विथिन 24 हाउर्स कंटीन्यूअस राउंड थे क्लॉक आपरेशंस करके पूरी एयर फोर्स इसमें लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने ज्यादा टैंकर्स ला सकें और देश की मदद कर सकें सर आई
कैप्टेन आपको इंटरनेशनल में अभी कहाँकहाँ दौड़ भागना पड़ा
सर शॉर्ट नोटिस पे हमें सिंगापुर दुबई बेल्जियम जर्मनी और उक आई यह सब जगह पे डिफरेंट फ्लीट्स ओएफ थे इंडियन एयर फोर्स सर IL76 C17 और बाकी सारे विमान गए थे C130 जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यह मिशन्स प्लान करके आई हमारी ट्रेनिंग और जोश की वजह से हम टाइमली इन मिशन्स को कंप्लीट कर पाए सर आई
देखिये इस बार देश गर्व अनुभव करता है कि जल हो थल हो नभ हो हमारे सारे जवान इस कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई में लगे हैं और कैप्टेन आपने भी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी निभाई है तो मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूँ आई
सरथांक यू सो मुच सर आई हम अपनी पूरी कोशिश में जीजान के साथ लगे हुए हैं और मेरी बेटी भी मेरे साथ है सर अदिति आई
नमस्ते मोदी जी
नमस्ते बेटी नमस्ते आई अदिति आप कितने साल की हैं
मैं 12 साल की हूँ औरमैं क्लास 8thमें पढ़ती हूँ आई
तो यह पिताजी बाहर जाते हैं यूनिफॉर्म में रहते हैं आई
हाँ उनके लिए मुझे बहुत प्राउड लगता है बहुत गर्व महसूस होता है कि वो इतना सब महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं
जो सारे कोरोना पीड़ित लोग हैं उनकी मदद इतनी ज्यादा कर रहे हैं और इतने सारे देशों से आक्सीजेन tankersला रहे हैंकंटेनर्स ला रहे हैं आई
लेकिन बेटी तो पापा को बहुत मिस करती है ना
हाँ मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें आई वो आजकल ज़्यादा घर पे रह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जा रहे हैं और कंटेनर्स और टैंकर्स उनके प्रोडक्शन प्लांट्स तक पहुंचा रहे हैं ताकि जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनको टाइमली आक्सीजेन मिल सके और उनकी जान बच सके आई
तो बेटा यह जो आक्सीजेन के कारण लोगों की जान बचाने वाला काम तो अब घरघर में लोगों को पता चला है आई
जब तुम्हारे फ्रेंड सर्किल तुम्हारे साथी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि तुम्हारे पिताजी आक्सीजेन की सेवा में लगे हैं तो तुम्हारे प्रति भी बड़े आदर से देखते होंगे वो लोग
हाँ मेरे सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि तुम्हारे पापा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और तुम्हें भी बहुत प्राउड लगता होगा और तब मुझे इतना ज़्यादा गर्व अनुभव होता है
और मेरी जो सारी फैमिली है मेरे नानानानी दादी सब लोग ही मेरे पापा के लिए बहुत प्राउड हैं मेरी मम्मी और वो लोग भी डॉक्टर्स हैं वो लोग भी दिन रात काम कर रहे हैं और सारी आर्मेड फोर्सेस मेरे पापा के सारे स्क्वाड्रॉन के अंकल्स और सारी जो फोर्सेस हैं सब लोग सारी सेना बहुत काम कर रही है और मुझे यकीन है कि सबकी कोशिशों के साथ हम लोग कोरोना से यह लड़ाई ज़रूर जीतेंगे आई
हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटी जब बोलती है ना तो उसके शब्दों में सरस्वती विराजमान होती है और जब अदिति बोल रही है कि हम ज़रूर जीतेंगे तो एक प्रकार से यह ईश्वर की वाणी बन जाती है आई अच्छा अदिति अभी तो ओनलाइन पढ़ती होगी
हाँ अभी तो हमारे सारे ओनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और अभी हम लोग घर पे भी सारे फुल प्रीकॉशंस ले रहे हैं और कहीं अगर बाहर जाना है तो फ़िर डबल मास्क पहन के और सब कुछ सारे प्रीकॉशंस और पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं आई
अच्छा बेटा तुम्हारी क्या हॉबीज हैं क्या पसंद है
मेरी हॉबीज हैं कि मैं स्विमिंग और बास्केटबॉल करती हूँ पर अभी तो वो थोड़ा बंद हो गया है और इसlockdown और कोरोना वायरस के दौरान मैंने बेकिंग और कुकिंग का बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है और मैं अभी सारे बेकिंग और कुकिंग करके जब पापा इतना सारा काम करके आते हैं तो मैं उनके लिए कुकीज और केक बनाती हूँ आई
वाहवाह वाह चलिए बेटा बहुत दिनों के बाद तुम्हें पापा के साथ समय बिताने का मौका मिला है
बहुत अच्छा लगा और कैप्टेन आपको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ लेकिन जब मैं कैप्टेन को बधाई देता हूँ मतलब सिर्फ़ आपको ही नहीं सारे हमारे फोर्सेस जल थल नभ जिस प्रकार से जुटे हुए हैं मैं सबको सबको सैल्यूट करता हूँ आई धन्यवाद भईया आई
जीआरपी
सीपीटी
थांक यू सिर
साथियो हमारे इन जवानों ने इन वॉरियर्स ने जो काम किया है इसके लिए देश इन्हें सैल्यूट करता है
इसी तरह लाखों लोग दिन रात जुटे हुए हैं
जो काम वो कर रहे हैं वो इनके राउटाइन काम का हिस्सा नहीं है
इस तरह की आपदा तो दुनिया पर सौ साल बाद आई है एक शताब्दी के बाद इतना बड़ा संकट इसलिए इस तरह के काम का किसी के पास कोई भी अनुभव नहीं था
इसके पीछे देशसेवा का जज़्बा है और एक संकल्पशक्ति है
इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सामान्य दिनों में हमारे यहाँ एक दिन में 900 मेट्रिक टनलिक्विड मेडिकल आक्सीजेन का प्रोडक्शन होता था
अब ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़करकरीबकरीब 9500 मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है
इस आक्सीजेन को हमारे वॉरियर्स देश के दूरसुदूर कोने तक पहुँचा रहे हैं
मेरे प्यारे देशवासियो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए देश में इतने प्रयास हुए इतने लोग जुटे एक नागरिक के तौर पर ये सारे कार्य प्रेरणा देते हैं
एक टीम बनकर हर किसी ने अपना कर्तव्य निभाया है
मुझे बैंगलुरु से उर्मिला जी ने कहा है कि उनके पति लैब टेक्नीशियन हैं और ये भी बताया है कि कैसे इतनी चुनौतियों के बीच वो लगातार टेस्टिंग का काम करते रहे हैं
साथियो कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी लेकिन आज ढाई हजार से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं
शुरू में कुछ सौ टेस्ट एक दिन में हो पाते थे अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं
अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जाँच की जा चुकी है
ये इतना बड़ा काम इन साथियों की वजह से ही संभव हो रहा है
कितने ही फ्रंटलाइन वर्कर्स सैंपल कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं
संक्रमित मरीजों के बीच जाना उनका सैंपल लेना ये कितनी सेवा का काम है
अपने बचाव के लिए इन साथियों को इतनी गर्मी में भी लगातार प्पे किट पहन के ही रहना पड़ता है
इसके बाद ये सैंपल लैब में पहुँचता है
इसलिए जब मैं आप सबके सुझाव और सवाल पढ़ रहा था तो मैंने तय किया कि हमारे इन साथियों की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए
इनके अनुभवों से हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा
तो आइये दिल्ली में एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले हमारे साथी प्रकाश कांडपाल जी से बात करते हैं
प्रकाश जी नमस्कार
नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी
प्रकाश जी सबसे पहले तो आप मन की बात के हमारे सभी श्रोताओं को अपने बारे में बताइये
आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं और कोरोना के समय आप का क्या अनुभव रहा है क्योंकि देश के लोगों को इस प्रकार से न टीवी पर दिखते हैं न अखबार में दिखते हैं
फिर भी एक ऋषि की तरह लैब में रह करके काम कर रहे हैं
तो मैं चाहूँगा कि आप जब बताएंगे तो देशवासियों को भी जानकारी मिलेंगी कि देश में काम कैसे हो रहा है
मैं दिल्ली सरकार के स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ओएफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज नाम के हॉस्पिटल में पिछले 10 वर्षों से लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हूँ
मेरा स्वास्थ्यक्षेत्र का अनुभव 22 वर्षों का है
आईएलबीएस से पहले भी मैं दिल्ली के अपोलोहॉस्पिटल राजीव गाँधी कैंसर हॉस्पिटल रोटरी ब्लड बैंक जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर चुका हूँ
सर यद्यपि सभी जगह मैंने रक्तकोष विभाग में अपनी सेवाएं दी परन्तु पिछले वर्ष 1 अप्रैल 2020 से मैं आईएलबीएस के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिरत कोविड टेस्टिंग लैब में कार्य कर रहा हूँ
निसंदेह कोविड महामारी में स्वास्थ एवं स्वास्थ्य संबंधित सभी साधनसंसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा पर मैं इस संघर्ष के दौर को निजी तौर पर इसमें ऐसा अवसरमानता हूँ जब राष्ट्रमानवता समाज हमसे अधिक उत्तरदायित्व सहयोग हमसे अधिक सामर्थ्य और हमसे अधिक क्षमता के प्रदर्शन की अपेक्षा करता है और आशा करता है
और सर जब हम राष्ट्र के मानवता के समाज के अपेक्षा के और आशा के अनुरूप अपने स्तर पर जो कि एक बूंद के बराबर है हम उसपे काम करते हैंखरा उतरते है तो एक गौरव की अनुभूति होती है
कभी जब हमारे घरवाले भी आशंकित होते है या थोड़ा उन्हें भय लगता है तो ऐसे अवसर पर उनको स्मरण कराता हूँ कि हमारे देश के जवान जो कि सदैव ही परिवार से दूर सीमाओं पर विषम और असामान्य परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी तुलना में तो हमारा जोखिम जो है कम है बहुत कम है
तो वो भी इस चीज को समझते हैं और मेरे साथ में एक तरह से वो भी सहयोग करते हैं और वो भी इस आपदा में समान रूप से जो भी सहयोग है उसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं
प्रकाश जी एक तरफ सरकार सबको कह रही है कि दूरी रखो दूरी रखोकोरोना में एकदूसरे से दूर रहो
और आपको तो सामने से होकरके कोरोना के जीवाणुओं के बीच में रहना ही पड़ता है सामने से जाना पड़ता है
तो ये अपने आप में एक जिंदगी को संकट में डालने वाला मामला रहता है तो परिवार को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है
लेकिन फिर भी ये लैब टेक्नीशियन का काम सामन्य संजोगों में एक है
और ऐसी पैंडेमिक स्थिति में दूसरा है और वो आप कर रहे हैं
तो काम के घंटे भी बहुत बढ़ गए होंगें रातरात लैब में निकालना पड़ता होगा क्योंकि इतना करोड़ों लोगों का टेस्टिंग हो रहा है तो बोझ भी बढ़ा होगा लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी ये सावधानी रखते हैं कि नहीं रखते हैं
बिल्कुल रखते है सर
हमारे आईएलबीएस की जो लैब है वो व्हो से मान्यताप्राप्त है
तो जो सारे प्रोटोकॉल हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैंहम त्रिस्तरीय जो हमारी पोशाक है उसमे हम जाते हैं लैब में और उसी में हम काम करते हैं
और उसका पूरा डिस्कार्डिंग का लैबेलिंग का और उनको टेस्टिंग का एक पूरा प्रोटोकॉल है तो उस प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं
तो सर ये भी ईश्वर की कृपा है कि मेरा परिवार और मेरे जानने वाले अधिकतर जो अभी तक इस संक्रमण से बचे हुए हैं
तो एक चीज है कि अगर आप सावधानी रखते हैं और संयम बरतते हैं तो आप थोड़ा बहुत उससे बचे रह सकते हैं
प्रकाश जी आप जैसे हजारों लोग पिछले एक साल से लैब में बैठे हैं और इतनी ज़हमत कर रहे हैं
इतने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं
जो देश आज जान रहा है
लेकिन प्रकाश जी मैं आपके माध्यम से आपकी बिरादरी के सभी साथियों को हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ
देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ
और आप स्वस्थ रहिये
आपका परिवार स्वस्थ रहे
मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं
धन्यवाद प्रधानमंत्री जी
मैं आपका बहुतबहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया
धन्यवाद भईया
साथियों एक प्रकार से बात तो मैंने भाई प्रकाश जी से की है लेकिन उनकी बातों में हजारों लैब टेक्नीशियन्स की सेवा की सुगंध हम तक पहुँच रही है
इन बातों में हजारोंलाखों लोगों का सेवाभाव तो दिखता ही है हम सभी को अपनी ज़िम्मेदारी का बोध भी होता है
जितनी मेहनत और लगन से भाई प्रकाश जी जैसे हमारे साथी काम कर रहे हैं उतनी ही निष्ठा से उनका सहयोग कोरोना को हराने में बहुत मदद करेगा
मेरे प्यारे देशवासियों अभी हम हमारे कोरोना वॉरियर्स की चर्चा कर रहे थे
पिछले डेढ़ सालों में हमने उनका खूब समर्पण और परिश्रम देखा है
लेकिन इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका देश के कई क्षेत्रों के अनेक वॉरियर्स की भी है
आप सोचिए हमारे देश पर इतना बड़ा संकट आया इसका असर देश की हर एक व्यवस्था पर पड़ा
कृषिव्यवस्था ने ख़ुद को इस हमले से काफी हद तक सुरक्षित रखा
सुरक्षित ही नहीं रखा बल्कि प्रगति भी की आगे भी बढ़ी क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रेकॉर्ड उत्पादन किया है किसानों ने रेकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रेकॉर्ड फसल खरीदी भी की है
इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है
रेकॉर्ड खाद्यान्नउत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है
आज इस संकट काल में 80 करोड़ ग़रीबों को मुफ़्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ग़रीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले
साथियों आज हमारे देश के किसान कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कमाल कर रहे हैं
जैसे कि अगरतला के किसानों को ही लीजिए ये किसान बहुत अच्छे कटहल की पैदावार करते हैं
इनकी मांग देशविदेश में हो सकती है इसलिए इस बार अगरतला के किसानों के कटहल रेल के जरिए गुवाहाटी तक लाये गए
गुवाहाटी से अब ये कटहल लंदन भेजे जा रहे हैं
ऐसे ही आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा
2018 में सरकार ने शाही लीची को गी टैग भी दिया था ताकि इसकी पहचान मज़बूत हो और किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो
इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाईमार्ग से लंदन भेजी गई है
पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा पड़ा है
दक्षिण भारत में विजयनगरम के आम के बारे में आपनेज़रुर सुना होगा अब भला ये आम कौन नहीं खाना चाहेगा इसलिए अब किसानरेल सैकड़ों टन विजयनगरम आम दिल्ली पंहुचा रही है
दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को विजयनगरम आम खाने को मिलेगा और विजयनगरम के किसानों को अच्छी कमाई होगी
किसानरेल अब तक करीब करीब 2 लाख टन उपज का परिवहन कर चुकी है
अब किसान बहुत कम कीमत पर फल सब्जियाँ अनाज देश के दूसरे सुदूर हिस्सों में भेज पा रहा है
मेरे प्यारे देशवासियों आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है
इन वर्षों में देश सबकासाथ सबकाविकास सबकाविश्वास के मंत्र पर चला है
देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है
मुझे कई साथियों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में 7 साल की हमारीआपकी इस साझी यात्रा पर भी चर्चा करूँ
साथियों इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है देशवासियों की रही है
कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं
जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं अपने संकल्प से चलता है तो हम सबको गर्व होता है
जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साज़िश करने वालों को मुंहतोड़ ज़वाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है
जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं
साथियों मुझे कितने ही देशवासियों के संदेश उनके पत्र देश के कोनेकोने से मिलते हैं
कितने ही लोग देश को धन्यवाद देते हैं कि 70 साल बाद उनके गाँव में पहली बार बिजली पहुंची है उनके बेटे बेटियाँ उजाले में पंखे में बैठ करके पढ़ रहे हैं
कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा भी गाँव अब पक्की सड़क से शहर से जुड़ गया है
मुझे याद है एक आदिवासी इलाके से कुछ साथियों ने मुझे संदेश भेजा था कि सड़क बनने के बाद पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि वो भी बाकी दुनिया से जुड़ गए हैं
ऐसे ही कहीं कोई बैंक खाता खुलने की खुशी साझा करता है तो कोई अलगअलग योजनाओं की मदद से जब नया रोज़गार शुरू करता है तो उस खुशी में मुझे भी आमंत्रित करता है
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने के बाद गृहप्रवेश के आयोजन में कितने ही निमंत्रण मुझे हमारे देशवासियों की ओर से लगातार मिलते रहते हैं
इन 7 सालों में आप सबकी ऐसी करोड़ों खुशियों में मैं शामिल हुआ हूँ
अभी कुछ दिन पहले ही मुझे गाँव से एक परिवार ने जल जीवन मिशन के तहत घर में लगे पानी के नल की एक फोटो भेजी
उन्होंने उस फोटो का कैप्शन लिखा था मेरे गाँव की जीवनधारा
ऐसे कितने ही परिवार हैं
आज़ादी के बाद 7 दशकों में हमारे देश के केवल साढ़े तीन करोड़ ग्रामीण घरों में ही पानी के कनेक्शन थे
लेकिन पिछले 21 महीनों में ही साढ़े चार करोड़ घरों को साफ पानी के कनेक्शन दिए गए हैं
इनमें से 15 महीने तो कोरोनाकाल के ही थे इसी तरह का एक नया विश्वास देश में आयुष्मान योजना से भी आया है
जब कोई ग़रीब मुफ़्त इलाज से स्वस्थ होकर घर आता है तो उसे लगता है कि उसे नया जीवन मिला है
उसे भरोसा होता है कि देश उसके साथ है
ऐसे कितने ही परिवारों का आशीर्वचन करोड़ों माताओं का आशीर्वाद लेकर हमारा देश मजबूती के साथ विकास की ओर अग्रसर है
साथियोंइन 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है
आज किसी भी जगह जितनी आसानी से आप चुटकियों में डिजिटल पेमेंट कर देते हैं वो कोरोना के इस समय में भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है
आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों की गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है
हम रेकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रेकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं
इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं
पूर्वोतर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है
साथियोंक्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके इन 7 सालों में कैसे हुए ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम कियाएक टीम के रूप में काम कियाटीम Indiaके रूप में काम किया
हर नागरिक ने देश को आगे बढ़ाने में एकाधएकाध कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है
हाँ जहाँ सफलताएँ होती हैं वहाँ परीक्षाएँ भी होती हैं
इन 7 सालों में हमने साथ मिलकर ही कई कठिन परीक्षाएँ भी दी हैं और हर बार हम सभी मज़बूत होकर निकले हैं
कोरोना महामारी के रूप में इतनी बड़ी परीक्षा तो लगातार चल रही है
ये तो एक ऐसा संकट है जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया है कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है
बड़ेबड़े देश भी इसकी तबाही से बच नहीं सके हैं
इस वैश्विकमहामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है
हमने पहली वेव में भी पूरे हौसले के साथ लड़ाई लड़ी थी इस बार भी वायरस के खिलाफ़ चल रही लड़ाई में भारत विजयी होगा
दो गज की दूरी मास्क से जुड़े नियम हों या फिर वैक्सीन हमें ढिलाई नहीं करनी है
यही हमारी जीत का रास्ता है
अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो देशवासियों के कई और प्रेरणादायक उदाहरणों पर बात करेंगे और नए विषयों पर चर्चा करेंगे
आप अपने सुझाव मुझे ऐसे ही भेजते रहिए
आप सभी स्वस्थ रहिए देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए
बहुत बहुत धन्यवाद